तस्वीर में एक आदमी है।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

और बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि सफेद रंग की वो है।

जिस पर लिखा है सरस्वती विहार फैमिली ।

जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है।

और यह थिंक गैस का पेट्रोल पंप है।

इस तस्वीर में एक सजी हुई गली दिख रही है।

उसके बराबर में दो आदमी पीछे खड़े हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे गद्दे दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।